यहाँ पर बहुत सारी महिलाए बैठी हुई है लडकीया बैठी हुई है बच्चे बैठे हुए है और यहाँ पर पुरुष भी खड़े हुए है लड़के खड़े हुए और यहाँ पर मेला लगा जा रहा बच्चों के लिए खेलने की जगह है कार्पेट मे महिलाए बैठी हुई है जो खेल रहे बच्चे खेल रहे है।

यहा आस-पास बंधा हुआ है।